बेडरूम बहुत अच्छा है ये बेडरूम देख के सब को बहुत अच्छा लग रहा है सब घर में होना चाहिए। जिसकों भी नहीं हो वो भी सोचते हैं की हमारे घर में भी एक होना चाहिए।

तो भगवान बुद्ध है बुद्ध भगवान का पूजा देखने में भी प्रतिमा सुंदर लग रही है हर आदमी को होता है उनका दर्शन करें उनका पूजा करें ।